काफी सुंदर यहाँ पे आपको दृश्य देख रहा है।

यहाँ पे आप देख सकते है काफी बढ़िया दुकान है। यहाँ पे टॉफी बिस्कुट कई तरह के चिप्स हैं।

काफ़ी अच्छा है ये काफ़ी अच्छा ये शेरवानी है देख सकते हैं आप बहोत बढ़िया लुक है इसका। इसका दाम भी हाई है और अब जब इस बार की कंपनी क --

यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी को काफी काफी प्रचलित इनका छवि है।

आप देख सकते हैं की काफी सुंदर इमारते है यहाँ पे जरूर आप क यहाँ पे घूमने आइये अगर आपको उसमैं --

यहां पे देख सकते हैं शायद ये भाई साहब लँगड़ है क्या ? वहाँ पे गुफा में पैर डाल के नहीं नहीं जी वहां पे बैठ के उसमें से कुछ देख रहे हैं।

यहाँ पे देख सकते हैं मुझे पता नहीं है ये कौन सी नदी है पर इस काफी इसका वेरी नाइस लुक सो

देख सकते हैं आप बढ़िया ओ स्टैन्ड विस्टैंड लगाए हैं लोग। काफी बढ़िया हैं।

यहां पे देख सकते हैं विज़न स्काई एकेडमी है यहाँ पे । यहाँ पे एक नर्स नहीं नहीं ये शायद स्कूल है आईआईटीजेईई ओई भी है यहाँ पे है यहां पे --

काफी देखने में तो ये मन को एकदम लुभाने वाला एकदम दृश्य है ये काफी सुंदर दृश्य है ये कोई बात नहीं --

आएँ-बाएँ में डांस करती हुई आपको बढ़िया दृश्य में दिख रही हैं। काफी अच्छे-अच्छे बनावटी फूल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर यहाँ का कितना बढ़िया है। बहोत बढ़िया स्टेयर यहाँ।